बहोत सारे लोग यहां आये हुए है।

दो तीन स्टैचू और रखे हुए हैं।

जहां पर बहोत सारे बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं।

टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं टेबल कुर्सियों पर गुलाबी और काले कलर के पकड़ों से सजाया हुआ है।

नर्सरी के पीछे एक सफेद बिल्डिंग है।

अलग अलग क्यारियों में ये फूल लगे हुए हैं।